और यहां पे एक सफेद रंग की ए_सी है एक लाल रंग का बोर्ड है यहां पे--

बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है और यहां पे दो रूम है और यहां पे चेयर भी लगे हुए हैं यहां पे एक छोटी सी ब्लैक रिंग की टी_वी भी लगी हुई है।

यहां पे कुछ लाइट्स भी जल रहे हैं और यहां पे एक गोल्डेन --

ये एक पंजाब मोटर्स लिखा हुआ है और यहां पे काफी सारे मोटर्स मिल रहे हैं।

चक्के लगे हुए हैं और यहां एक ब्राउन कलर का भी कुछ रखा हुआ है जिसमें सामान बहोत सारा रखा हुआ है।

और यहां पे एक काले सफेद रंग का डंटा भी लगा हुआ है और एक गेट है जो ब्राउन कलर का है और यहां पे दो-तीन लाइट लगी हुई है जो बहोत ही --

यहां पे बहोत सारे कुछ डिब्बे भी रखे हुए हैं और यहां पे कुछ ये --

ये एक जगह है और यहां पे ब्लू कलर का कुछ लिखा हुआ है यहां पे सफेद आसमान है उसमें सफेद सफेद बादल भी है।

खाली सरक है और यहां पर रोड के किनारे कुछ बना हुआ है जो काले और पीले रंग का है।

ये एक जगह है यहां पे पीली-पीली सरसों की खेत है और यहां पे बहोत सारी औरत है और कुछ है।

जो इसको काट रहे हैं यहां पे कुछ हरे हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहां पे उसने जिस्म पे कुछ पहना है और वो जो झाड़ू काफी भरा है।

सेट हो रहा है यहां पे काफी सारे लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं यहां पे--

ये एक जगह है और यहां पे हरे-हरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहां पे एक घर है जो सफेद रंग का है।

और बहोत सारी चीजें हैं और यहां पे एक कॉपी है जिसमें यूनिक बना हुआ है।

और यहां पे एक्सेसरीज लिखा हुआ है और यहां पे एक दो कप है जो--

उसमे में कुछ लिखा हुआ है और यहां पे खुला आसमान सफेद --

कुछ काला-काला थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है यहां फिर कुछ इंसान दिख रहे है।

ये एक छोटी सी बच्ची है वो यहां झूला झूल रही है और--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

हम यहां दो कुछ लोग भी बैठे नजर आ रहे हैं।

मोटे सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां पे कुछ कलरफुल चीजें भी लगी हुई है।

छोटे छोटे बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं कुछ पर्पल और गोल्डन लाइट भी लगी है।

ये एक जगह है और यहां पे एक पंखा लगा हुआ है जो सफेद रंग का है।

अभी बहोत सारे लोगों के यहां पे एक वाश बेसिन भी है।

और यहां पे कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं और खिटकी भी लगे हुए है।

और यहां पे ये बहुत सारे एक साथ घर बने हुए हैं।

और ये काफी अच्छा है का घर है इसमें काफी सारी--

और यह एक बाइक है हाउस वाइफ उसमे एक इंसान बैठा हुआ है।

यहां पे एक इंसान है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है .

और यहां पे दो इंसान भी खड़े हैं उसमें से एक ने काली शर्ट पहनी है और यहां पे काफी सारे डिब्बें हैं और डिब्बें में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पे एक घरी है और एक पंखा लगा हुआ है जो सफेद रंग का है।

और यहां पे काफी बड़े-बड़े शीशे लगे हुए हैं और यहां पे एक कवर्ड भी रखा हुआ है अलमारी है।

ये एक जगह है और यहां पे दो तीन पंखे लगे हुए हैं और यहां पे काफी सारी खाने की चीज़े --

यहां पे एक वाश बेसिन रखा हुआ है और यहां पे एक पर्दा --

और यहां पे एक कॉफी बनाने की मशीन भी लगी हुई है और यहां पे बहुत सुंदर--

यहां पे दो सीसे लगे हुए हैं और ये सीसा लगा हुआ गेट और यहां पे--

तीन चार बड़े-बड़े लाइट्स लगे हुए हैं और यहां पे काफी सारे सीस के बोतल्स है गिलासेस है और यहां पे एक दो टेबल भी लगे हुए--

और दोनों बाइक काले रंग की यहां पे छोटे-छोटे काफी सारे गमले लगे हुए हैं।

और यहां एक येलो कलर का पोस्टर है और यहां पे लाइट जल रहा है।

मशीन भी लगा हुआ है और यहां पे दो घर भी हैं।

और जो दिए हैं वो मिट्टी के बहोत प्यारे प्यारे--

लाइट जल रही है और यहां पे एक इंसान है उसने अपने सर --

और ये बेड बहुत ही बड़ा है और इस बेड का कलर हल्का ब्राउन कलर है।

और इस गेट के बाहर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो हरे-हरे रंग के है।